ऑफिस है कंप्यूटर के काम चल रहा है यहाँ बहुत अच्छा हैं ।

वो काम कर रहा है कोई कार चला रहा हैं ।

तालाब है बहुत झील वगैरह दिख रहा है पेड़ -पौधा बहुत हरा-भरा सुन्दर दिखाई दे रहा हैं ।

मस्त दिखाई दे रहा है कर के --

कपड़ा टंगा हुआ है रखा हुआ मोड़-मोड़ के इसमें किया हुआ है मस्त दिखाई दे रहा हैं ।